दूकान के अन्दर कई सारे अलग-अलग सामान रखे हुए है। बाहर कैरोट में भी सामान रखे गए है।

इस पिक्चर में कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं पीले रंग का फूल भी दिखाई दे रहा है ।

पीछे एक बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है पेड़ के आस-पास कई मकाने दिखाई दे रही है ।

इस पिक्चर में एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है सामने एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है वह किसी --

छोटे-छोटे घास उगे हुए हैं आस-पास कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ छोटे तथा कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक दूकान दिखाई दे रहा है ।

दूकान के बाहर एक स्टूल रखा गया है वह स्टूल गुलाबी तथा सफ़ेद रंग का है ।